जैसा कि आप लोग देख सकते है हमारे सामने एक लड़का सेल्फी लेते हुये दिखाई दे रहा है जो रेड कलर की स्वेटर एंड मफलर पहने हुआ है। इसके साथ एक बच्चा भी खड़ा हुआ है।

यहाँ से जल भरते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ हमें नाव भी तैरती हुई दिखाई दे रही हैं जिनमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं।

सामने एक लड़का खड़ा हुआ है इस लड़के के पीछे एक एसी भी लगी हुई है। यहाँ पर खुर्सी और टेबल भी दिखाई दे रहे हैं।

इन कैंडलो को लाल कलर के स्टूल पर रखा गया है यहाँ पर ग्रीन ग्रास भी --

जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर चर्च में क्रॉस बना हुआ है | यहाँ पर नीले लाल नीले गुलाबी और --

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक फोंटेन फाउंटेन बना हुआ है जहाँ से पानी आ रहा है।